लगी हुई कुछ सामान भी हमे यहां पर दिखाई दे रहे--

साथ में कुछ फूलों के गमले लगे हैं यहां पर ब्राउन ड्रेस में ब्लैक ड्रेस में एक व्यक्ति खड़ा है साथ में ग्रीन जींस में भी एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें बारिश दिखाई दे रही है। बारिश में लगता ही एक बोर्ड है। साथ में एक मकान दिखाई दे रहा है। यहां पर मकान का कलर हमें--

और कुछ लोग यहां पर खड़े हैं अंदर कुछ बल्ब दिख रहे हैं और सामने ही हमें यहां पर दिख रहा है टाइल्स से बना हुआ सुंदर सा शोरूम ।

पीछे बहुत सुंदर सा हमें और नजारा दिखाई दे रहा है जिसमें कि हमें दिखाई दे रहा है व्हाइट आसमान दिखाई दे रहा है हरा भरा घास दिखाई दे रहा है हरे भरे पेड़ पौधे--

रेड भी है। कई बाहर में यहां पर व्हाईट पिंक कलर भी दिखाई दे रहा--

यहां पर हमें कुछ अनार दिख रहे हैं व्हाइट कलर की छोटी छोटी लड़ियां दिख रही हैं।

जिनका कलर हमे सिल्वर और वाइट भी नजर आ रहा है साथ में हमें बना हुआ कम--

सीढ़ियां दिखाईं दे रही हैं ये और सीढ़ियां हमे बिल्डिंग के साथ लगते हुए कुछ कमरों में जा रहीं है साथ में ही यहां पर --

रेलिंग लगी है जो वाइट कलर की रेलिंग है पीछे यहां पर पट्टियां दिखाई दे रही है।

येलो कलर की है सामने ही हमें व्हाईट कलर दिख रहा है सामने हमें कांच दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक कार दिखाई दे रही है जो इग्निस कार है साथ में शोरूम दिखाई दे रहा है शोरूम के साथ ही --

और व्हाइट रंग का एक छोटा सा शेड दिखाई दे रहा है जिसके नीचे कुछ व्यक्ति बैठे हुए--

इस फोटो में हमें कार दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक शॉप दिखाई दे रहीं हैं जो की--

जिम की मशीनें एक व्यक्ति यहां खड़ा ग्रीन शर्ट में वाइट कलर की--